भूरा और लाल में है और तीन खंभे दिखाई दे रहे हैं जो सादे रंग है और उसमें से बहोत सारे इलेक्ट्रिक वायर दिखाई पड़ रहा है।

इसमें बहोत सारे आपको नाव दिखाई दे रहे हैं।

जो कि बहोत सारा बेड दिखाई दे रहा है जो भूरे रंग की है।

कुछ तस्वीरें चिपका कर रखें है और भीं पेपर ओपर चिपका कर रखें--

आसमानी ये पिला है लाल रंग के है।

और एक गुलाबी रंग का पैंट शर्ट पहन के रखा गया है और एक पीछे में दादी है जोकि चश्मा लगा के रखी--

यह एक मेडिकल है जिसका नाम कुशेल जेमे--

और यहां पर सफेद रंग का कुछ दिखाई दे रहा है।

इसमें दो नाव दिखाई दे रही है और एक छोटा सा नाव जो दिखाई दे रहा है --

और पानी बहुत ही गंदा दिखाई दे रहा है और छोटे-छोटे घास भी है।

एक जो कि हरा और सफेद रंग का है और एक सामने में कैलकुलेट दिखाई दे रहा है और सामने में पेन्सिल है ।

इसका रंग पीला और गुलाबी रंग का है और ऊपर में एक छोटा सा लाइट दिखाई दे रहा है जो सफेद रंग की है।

इसमें बहोत सारे आपको सोफा दिखाई दे रहे है जो भूरे और सफेद रंग के है।

काले रंग का है और ऊपर मे सेंटर लिखा है।

इसके ऊपर बहुत बड़े-बड़े तार दिखाई दे रहे हैं और साइड में खंबा है जो सफेद रंग का है और यहां पर--

पेड़ दिखाई दे रहा है जो भूरे रंग का है और तीन खिड़की दिखाई दे रहा है ।

चक्के है जो की बहोत बड़े बड़े दिखाई पड़ रहे है।

पेड़ दिखाई दे रहा है जो हरे रंग का है।

और नीचे में एक बहोत ही बड़ा कपड़ा लगाया गया है।

और सामने में एक छोटा सा पेड़ दिखाई दे रहा है और पीछे साइड में बहुत बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो हरे रंग के है ।

और एक छोटा सा कूड़ेदान दिखाई दे रहा है जो हरे रंग का बल्टी है ।

जैसे नीला गुलाबी सफेद संतरा रंग का दिखाई दे रहा है चार चार करके लगाया गया है।

और एक लैपटॉप दिखाई दे रहा है और सामने में पी_सी_यू दिखाई दे रहा है और एक छोटा-सा ए_सी है और उसके बगल में छोटा पंखा दिखाई पड़ रहा है।

जो कि कीपर दिखाई दे रहा है और तीन विकेट लगा हुआ है।

और पीछे में बहुत बड़ा जाली लगाया जो सफेद रंग का है।

और यहा दो पंखे दिखाई दे रहे जो सफेद रंग का है।

यह एक दुकान है जिसमें बच्चों का तरह-तरह का खिलौना रखा गया है।

जो गुलाबी रंग का है और बहुत सारे पेन दिखाई दे रहे हैं बलून दिखाई दे रहा है।

इसमें दो पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जो सफेद रंग का--

और बहोत सारे हरे भरे पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं।

और पानी बहुत बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं जिसके अंदर मछली है।

और आसमान बिल्कुल सफेद दिखाई दे रहा है।

और अ एक व्यक्ति चलते हुए दिखाई दे रहा है जो सफेद रंग का कपड़ा पहन के रखा है और सर पर टोपी लिया है।

सफेद रंग खंभा दिखाई दे रहा है जो बहुत लंबे है।

ये एक रूम है जिसमें एक आदमी खड़ा है।

और तीन गैस दिखाई दे रहा है जो लंबे लंबे और एक बहोत बड़ा पर्दा दिखाई दे रहा है।

और नीचे में मार्बल हैकलर पूरे सादे रंग का है।

आसमानी और सफेद रंग के दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पर काले रंग का गेट दिखाई दे रहा और यहां साइड में--

जिसके बगल में एक नदी दिखाई दे रहा है जिसका पानी बहोत ही साफ दिखाई दे रहा है।

और बहोत ही दूर में आपको बहोत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं जो गाड़ी घोड़ा और नाव दिखाई दे रहा है।

जो बहोत सारे कपड़े ले रहे हैं जैसे कि जींस है पैंट है शर्ट है बहौत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं और एक आदमी समान--

और एक घर दिखाई दे रहा है जो पीले रंग का है।

और बहोत बड़े-बड़े खिड़की दिखाई दे रहे हैं और काले-काले--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

और घर बिल्कुल सफेद दिखाई दे रहा है घर के सामने काला रंग का--